यहां पे बगीचा है बगीचे में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो कि नजर आ रहे हैं और--

इसके आसपास अ पूल टाइप से बना हुआ है इसमें सब लोग नहाने के लिए बनवाते हैं जिसमे सब लोग नहाते हैं।

डिवाइडर भी बना हुआ है और ब्लू रोड बहुत चौड़ी है और वो कुछ टंकी टाइप्स से भी नजर आ रही है बनी हुई और पेड़ भी लगे हुए बहुत सारे और ट्रक भी खड़े हुए हैं।

और नीचे से कुछ तीर तार टाइप से निकले हुए हैं जिसमें लाइटिंग लगी होती है मॉल में कई नई मॉल कई --

ये एक इस्टेशन है जहाँ पे पटरी निकलती है जहाँ पर रेल निकलती है।

पे रखी हुई है पीछे एक कुर्सी रखी हुई है लाइटिंग हर जगह लाइट लाइट लगी है।

रोरिल लोहे की उसमें भी टंगे हुए हैं फ्लावर ऊपर तक रहे हुए हैं।

ये एक घर है जोकि घर बहुत ऊँचा बना हुआ है तीन दो तीन क्षेत्र में बना हुआ है घर बाहर पार्क टाइप से बना हुआ है जो कितने लगे हुए हैं छोटे छोटे और खंभे में बने हुए हैं।

ये बोहोत बड़ा सा पार्क दिखाई दे रहा है यहाँ पे रोड निकली हुई नजर आ रही है उसके पीछे बिल्डिंगे दिखाई दे रही है जोकि बहुत बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग है और यहाँ पार्क में --